यह एक मैदान है। यह मैदान काफी बड़ा है। इस मैदान में बहुत से आदमी एवं बच्चे खड़े हैं। यहाँ पर बच्चे खेल भी रहें हैं। इस मैदान के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी हैं। इस मैदान के किनारे बड़े-बड़े घर भी हैं। यह मैदान काफी सुंदर भी है।

इस मैदान में बड़े-बड़े पेड़ भी हैं इस मैदान में छोटी-छोटी घास भी है इस मैदान के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी है।

एक स्कूल है यह स्कूल काफ़ी बड़ा है इस स्कूल में एक बरांडा भी है।

यहाँ पर सामान उच्चित दाम में मिलता है | यहाँ पर एक दुकानदार है यह सामान को बेच रहे है ।

यहाँ बाइक भी खड़ी है। इस सड़क के किनारे एक बड़ी बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग काफी सुंदर है। इस बिल्डिंग में बहुत से कमरे भी हैं। यहाँ काफी रोशनी भी है।

यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी पुराना है इस बिल्डिंग में का ढलाई छूट रहा है यहाँ पर लकड़ी के सहारे ढलाई को रखा गया है।